और साइड में एक टीन शेड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ आदमी बैठे हुए है और पड़े दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े हरे और आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने एक हाल है जिसमें सफेद रंग का टेंट लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे फूलों की डेकोरेशन है। गुलाबी सफेद लाल हरे--

और खंबे दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहें हैं मल्टी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं आसमान दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पर कुछ आदमी भी खड़े है|

रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है जिसमे अ अ अ बैठने के लिए कुर्सी रखी हुई है।

और कुछ म खंभे दिखाई दे रहे है जिनमे तार अ दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है।

एक दिवार दिखाई दे रही है जिसमें रैक बनी हुई है रैको में उम्म बॉल जमी है और उम्म कपड़े रखे हुए हैं।

जे सब्जी की दुकान है बहुत से आदमी सब्जी खरीद रहे है रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और तखरी किलो दिखाई दे रहे है।

सामने एक बड़ा -सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ा गेट लगा हैं।

गुफा के अंदर उम्म्म कुछ आदमी जा रहे है।

और कुछ छोटे-छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे है और पड़े उम्म भी दिखाई दे रहे है।